इस दृश्य को देखकर मुझे लगता है--

देख कर लगता है कि यह एक बाजार है।

क्योंकि यहां पर पेड़ पौधे और रास्ते भी नज़र आ रहे हैं।

यह कोई कमरा हैं जहाँ पर बैठक--

कि यहां कोई घर है यहां पर--

जगह है जहां पर बैठक मेज कुर्सियां लोग बैठे--

लग रहा है कि यह खाने पीने की जगह--

दृश्य को देखकर लग रहा--